टो पिंक कलर दिख रहा है पीला कलर दिख रहा है ब्लैक --

कलर दिख रहा है | ग्रीन कलर दिख रहा है | आसमान --

लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है हाथ मे वॉच दिख रही है रेड |

ये दिख रहा है पत्थर और डिज़ाइन चबूतरा दिख रहा है ।

दिख रही है कार खड़ी हुई दिख रही है पेड़ --

टी.वी. दिख रहा है बोतल रखी हुई दिख रही है पिंक --

पेड़-पौधे दिख रहा है बहुत सारे कलर्स दिख रहा --

यहां पे मकान दिख रहा है बिजली वाले खंभे दिख रहे है पेड़--

क्रीम कलर दिख रहा है व्हाइट कलर दिख रहा है पिंक कलर दि--

यह हल्का सा जामुन कलर दिख रहा है गेट में डिज़ाइन बनी हुई दिख रही --

कलर रखी हुई दिख रही है ब्रेंच पे।

का कपड़ा दिख रहा है जामुनी कलर की शर्ट दिख रही है ।

बैठी भी दिख रहा है एक लड़के के मास्क लगा हुआ दिख रहा है।

जेंट्स बच्चे दिख रहे हैं स --